यह एक पार्क दिख रहा है। मैदान दिख रहा है।

जिसके बीच से सड़क है आते-जाते लोग सब्जी खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बाइक पे है कोई साइकिल पे है।

घांस दिखाई दे रहे हैं। पीछे क सीन बिलकुल काला दिख रहा है।